यह एक ग्राउंड की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और लाईट्स भी लगी है दर्शको का मन लुभाने के लिए ये बहुत ही अति सुंदर तस्वीर दिख रही है।

लक्ष्मी बाई बी. आर. अम्बेडकर भारत माता की तस्वीर दिखाइ दिखा लगी हुई है |

यह एक वॉटर ब्रिज की तस्वीर है वॉटर ब्रिज के नीचे कुछ व्यक्ति नदी में दिखाई पड़ रहे हैं।

यह चित्र एक सादी समारोह की तस्वीर लग रही है। सादी समारोह का पंडाल बहोत तरीके से सजाया गया है।

ये पंडाल के भीतर कुछ व्यक्ति व महिलाए फोटो खिचाते नजर आ रहे हैं।

तस्वीर एक ओडॉटोरीउम या किसी हॉल की है जहाँ कोई भव्य फंगक्शन हो रहा है वही दर्शक बेठे हुए हैं।